सामने एक गोट बैठी हुई है।

यह एक गॉगल्स की शॉप है।

सामने एक सोफा लगा हुआ है जिसका कलर रेड --

सामने यह एक टॉयज वाली शॉप है इसमें अलमीरा वाले--

इस केस चेयर्स के ऊपर कई सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

एक व्यक्ति वहां पर बैठा भी हुआ है।

बहोत बड़े पेड़ लगे हुए हैं और यहां चलने के लिए भी--

एक ट्रक के ऊपर श्री नंदी लिखा हुआ है।

और वेह आदमी झाड़ू लो लगा रहा है।

सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी का कलर व्हाइट एंड ब्लैक --

सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसके व्हाइट शल्ट एंड ब्लैक पैंट डाली हुई है।

इसके दीवारों का कलर स्काई ब्लू है और साथ में इनके खाली जगह भी पड़ी हुईं हैं।